यहां पर गधों का घर है यहां पर दो गधे खड़े हैं जिनका रंग हल्का ग्रे है।

यह एक ढाबा है इसमें बहुत सारे लोग खाना खा रहे हैं औ--

इसमें बहुत सारे व्यक्ति बैठे हैं इसके किनारे पर भी कुछ लोग खड़े हैं।

उसके बाहर हरे भरे पेड़ पौधे हैं और गाड़ियां खड़ी है।